और सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स देख रहे हैं।

यहाँ पे एक डॅम बना हुआ है जिस डॅम में पानी को रोका गया है जिस डॅम में पानी को रोका गया है।

एक किसी नदी ये किसी डॅम बना हुआ है जहां पे डॅम के किनारे पत्थर दिख रहे है।

इस घर में ये पूजावाला झेंडा बना है यहाँ पे अच्छा--

गाड़िया खड़ी है पार्क है यहाँ बच्चे दिख रहा है